बहुत सारी लड़की यहाँ पर मेकअप करवाने आती हैं ।

छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं इस ग्राउंड में।

यह रेलवे स्टेशन में बहुत सारी पटरियां है।